ये इस नीला आसमान है नीचे में पानी है

एक ऑटो है ऑटो में एक आदमी पैर रखे के खड़ा है साथ ही साथ एक-दो महिला अंदर में बैठे हुए है और एक भाई साहब --